चित्र में मुझे बोरियों पर रखा हुआ सामान दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

चित्र में मुझे शॉप पर रखी हुई कई सारी अंडरवियर की डिब्बे दिख रहें हैं।

चित्र में मुझे झूले पर चढ़ा एक लड़का दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बगल पे कपड़े डले हुए दिखाई--

दिख रहा है चित्र में मुझे कई सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं चित्र में--